यहां पर अलग अलग तरह की बहोत सारी सब्जियां--

गार्डन में हरी हरी घास उगी हुई है आसपास में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

साइड में एक सोफा लगा हुआ है ऊपर लाइट लगी हुई है।

टेबल पर तीन लोग बैठे हुए हैं आसपास में कई लोग --

यह पिक्चर एक गार्डन की है गार्डन में बच्चे --

इसमें एक लेडी खड़ी हुई है उनके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस पिक इसमें बहुत सारे आस-पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।